पीछे स्कूल नजर आ रही है और कुछ बसें भी नजर आ रही है।

नीचे कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं और वाहन नजर आ रहे हैं |

रोशनी का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है।

दो बैंच नजर आ रही है जिनके गद्दे का रंग नीला दिखाई दे रहा है |

तीनों महिला साड़ी पेहने हुए हैं आदमी ने नीला रंग का कुर्ता पेहने हुए है।

नाक में नथनी भी पहने हुए गले में हार पहने हुए हैं।